जैसे मैं देख पा रही हूं एक सुंदर सा सुबह का समय है और सामने एक रूम है अ जहां पे अ चार लडकियां ह हैं और यहां पे डांस सीख रही हैं प्रैक्टिस कर रही हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं शाम का समय है और शादी का माहौल है। और जिस तरह से यहां पे शादी पे सजाया गया है बहोत सुंदर से सजाया गया है फूलों से।

सामने खुला अ मैदान है और बड़ा सा पेड़ है और बोच्चे लोग के लिए बोत अच्छा है। बोत अच्छा लग रहा है।